ये एक बहोत बड़ा सा जिम एरिया है अ जिम एरिया में वो सब एक्सरसाइज के बहोत सारे सामान रखे हुए--

वाकिंग मशीन रखा है और सामने डंपे वगैरह बहुत सारे रखे हुए पेड़ पौधे हैं लाइट वगैरह लगी हुईं हैं।

और एक आदमी ऑरेंज कलर की टी शर्ट में है जिसने अपने माथे पे--

सामने सनराइज दिख रहा है अ जो पूरा ऑरेंज कलर का हो गया है।

ये एक बड़ा सा मैरिज हाल है अं जहां पे दिन में अं शादी का फंक्शन है।

सामने डेकोरेशन किया हुआ है स्टेज पे आजू बाजू बहोत से टेबल रखे हुए हैं।

ये बहोत बड़ा सा पार्क है पार्क के पास बहोत सारे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं और भी दूसरे पेड़ से वगैरा हैं सामने एक घर है।

जो ऊपर खुला हुआ है और बाजू आजू में दो बैनर लगे हुए हैं बड़े बड़े--

ये एक अ कंपनी है कंपनी में बुलडोजर वगैराह खड़ी हैं और कुछ मशीन उठा रही है क्रेन से--

से लोग खड़े हैं आजू बाजू दो बच्चे खड़े हैं ड्रम लेकर और बीच में एक लड़का--

सबने क्रिसमस की कैप पहनी हुई है और सबने में व्हाइट पिंक कलर के फ्रॉक में है।

ये एक पार्लर है पार्लर के सामने दो चेयर रखे हुए है एक साइड में--

सामने एक बहुत बड़ा अ फर्स्ट फ्लोर का एकेडमी है साइंस का हअ अ ऊपर बोर्ड पे टूस टू प्लस साइंस एकेडमी लिखा हुआ है।

और एक एक का घर भी दिख रहे हैं दूर से छोटे छोटे--

जन को कराटे सिखा रहे हैं और सबके कमर पर एक स्कार्फ बना हुआ है किसी के पास रेड है तो किसी के पास ब्लू येलो --

सामने वॉल पे अ डिज़ाइन किया हुआ है ट्रेन का और ट्रेन के ऊपर बहोत सारे एनिमल्स के पिक्चर बने हुए हैं।

और एक बड़ा सा विंडो है विंडो के ऊपर बि रेड और ग्रीन कलर का बैलून है साइड में चेयर है।

उसके ऊपर के_जी_एन सह जन सेवा केंद्र लिखा हुआ है उम्म साइड में एक लैपटॉप पे आदमी कम कर रहा है।

पेड़ हैं और साइड में बहुत दो तीन बाइक खड़ी हैं।